बीच में छोटे छोटे आलू भी हैं।

दस खिड़कियां दिखाई दे रही है खिड़कियों में कांच लगा हुआ है।

इस पिक्चर में काली माता की मूर्ति दिखाई दे रही है।

साथ ही नीचे लिखा हुआ है वाटर सप्लाई एंड सजेशन वाटर फॉर कम--

इस पिक्चर में एक प्ले ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

साथ ही के अंदर जाने के लिए लोगों लाइन लगी हुई है।

साथ में ऊपर की सजावटें रखी है उसमें फूल लगा रखे हैं।

एक ने लाल और नीले रंग की एक ने पीले कलर की एक ने हरे रंग की साड़ी डाल र--

अपनी पिक्चर ले रह है शीशे के सामने एक पानी की बोतल हैं दो कंगे दिखाई दे रहे है।

गुरुद्वारे की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। सफेद रंग की बिल्डिंग है। बिल्डिंग के ऊपर--

इस पिक्चर में कई पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ बहुत बड़े बड़े हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं साथ में कई लोग--

साथ में एक कटोरी में दही रखा हुआ उसमें चम्मच है चम्मच के साथ दो स्पून एक और रखे हुए हैं।